सामने एक पिंक कलर की बिल्डिंगे बनी हुई है और नाम भी लिखा हुआ है अ स्कूल के बाहर छोटी-छोटी सी घास जमी हुई है दीवार में कुछ पेंट्स बनी हुई है लड़की की और डस्ट्बिन के एक और ऑफिस है बाजू में।

टेबल के ऊपर बॉटल्स रखी हुई हैं कुछ खाने का समान भी रखा हुआ है आजु-बाजु में सीनरी भी लगी हुई है नीचे काफी प्यारा कारपेट --

हाँ यह एक काफी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है एक ऑफिस टाइप में है ये बाजू में काफी बड़ी बाउंड्री खींची हुई है एक ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है।